बहुत सारे तार भी गए हुए हैं और यहाँ पे बोहोत सारे मकांस मकान भी है।

पर्स ली हुई है और उ दुपट्टा ली हुई है। वहाँ पे किते सारे जेंट्स जा रहें हैं यहाँ पे लग रहा है जैसे की --

यहाँ पे लग रहा है जैसे की को बहुत सारे पेड़ भी हैं।

यहाँ पे एक टावर है। वहाँ पे वाइट कलर का सा कुछ --

और वहां पे दो-तीन चप्पल भी है और यहाँ पे लग रहा है जैसे की --

कोई ऑफिस ऑफिस है और वहां उसके ऊपर वो चिपकाया हुआ है और वहां पे एक दो तीन रस्स --

वाइट कलर का सूट पेहने हुए है वह बच्चा मुस्कुरा रहा है और बाल इतना सु अच्छा कटवाया है।

एक ताज जैसा है तीन-चार आदमी है लग रहा है वो --

यहाँ पे कुछ होने वाला है इसी कारन बहुत सारे लोग वहाँ पे आये हुए --

एक एक लेडी लहंगा और एक लेडी ब्लू कलर का ब्लाउज पहनी हुई है। एक लेडी ब्लू कलर का लहंगा पहनी हुई है और एक लेडी है।

ल दो तीन सड़े हुए टम टम टोमैटो है यहाँ पे एक ग्रीन टोमैटो पे --